इस चित्र मे हमको एक उर्दूओंकी भाषा मे लिखा हुआ छुपा हुआ मस्जिद दिखाई दे रहा हैं। ये एक मस्जिद--

ये अंदर जो भी वॉल्स होते है हम उसे देख रहे है यहा पे उर्दू की भाषा में कुछ लिखवाया गया है।

इस चित्र मे हमको एक बहुत बड़ा सा मस्जिद दिखाई दे रहा है। यहाँ पे--

यहाँ पे हमको एक मस्जिद की एंट्रेंस दिखाई दे रहा है इस मस्जिद का नाम है जामा मस्जिद कहते हैं। इस--

कार दिखाई दे रहा है उस कार का नहि है यहाँ पे एक ड्राविंग का डोर होते हे।